फोटो में बहुत सारी आंटी लोग एक्साइज कर रहै है जिसको योगा में डालके--

पीछे ब्रिज़ के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े है और यहाँ पर भी बहुत सारे --

ये किसी सेलून का फोटो है जिसका नाम बबला ब्यूटी सेलून हैं।

ये किसी ब्रिज़ की फोटो है जो--

और साइड में ये पंप हाउस ऑपरेटिंग वाला स्पेस है बहुत सारे पेड़ है और जंगल लग रहा है।

बीच में दो लाइन बना हुआ है जिसके सबसे सामने में दो --

यह कोरवा पॉवर हाउस रोड में स्थित--

पेड़ ही पेड़ और पेड़े ही पेड़ भरे है बस दो आदमी दिख रहे है।